सफेद कलर की कपड़े पहन के एक सिस्टर नजर आ रही हैऔर इन्हों सारे मे टोपी जैसा पहन हुआ है | वॉवई व्हाइट कलर का है।